तो यह इमेज एक धार्मिक प्रवेतन से है जिसमें हमें द दो टेंपल्स अभी दिख रहे हैं इस इमेज पे जिसमें ब भगवान रखे हुए हैं।

और राइट साइड में एक येलो कलर की टीशर्ट पहनकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर बोर्ड में नाम लिखा हुआ प्रतिमान निर्माण स्थल।

इस इमेज में हमें एक ठेला जैसा दिख रहा है जिस पर आम लगे हुए है| सेव लगे हुए है।

इस इमेज में हमें यह पता चल रहा है कि एक ये विराम घर जैसे पड़े हुए है जिसका नाम रघुनाथ का महाविद्यालय सीतामढ़ी जैसे शब्द लिखे हुए है।

यह आप देख रहे हो तबेला है इसको हिंदी में तबेला बोलते हैं जहाँ पर आप गाय रखते हो काउंसलिंग इस में काऊ सेट होता है।

और बड़े बच्चे लोग की भी मिलती है जहां पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं।

यह दुकान का नाम पटेल जनरल स्टोर ऑनलइन शॉप है| जहां पर जनरल स्टोर का मतलब आप सभी घर के जेनेरिक सामान यहां से ले सकते हो।

जैसे कि पत्ती चीनी वगैरा आप ले सकते हो| ऑनलाइन शॉप में भी आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हो।

ये जंगल है जहाँ आप देख सकते हो छोटी सी कुटिया है जहाँ पर आ आ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है येल्लो कलर की कुटिया बहुत अच्छी लग रही है देखने में और पूरे चारो तरफ जंगल -जंगल बना हुआ है।

रेगुलेशन के अनुसार आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं।